और मौसम तो मुझे खराब लग रहा है जहां पे धुंध जैसी दिख रही है।

और यहां साइड में एक छोटा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

और इस मकान पे एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है।

कुछ बंदे गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं और कुछ बंदे अभी गाड़ी के बाहर ही है।

और यहां भी एक बंदा एक शॉप के पास है जिसने ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ है।

और ये कुछ मश मशीन जैसी लग रही है जिसमें स्क्रू दिख रहे है और भी बहोत सारी चीज है इसमें।

पेट्रोल पंप पीछे से दिख रहा है और साइड में एक पेड़ भी दिख रहा है मुझे।

ये भी एक होटल है यहां पे ब्राउन कलर की की हुई है।

ये एक तस्वीर है जहां पे ये वॉटरफॉल जैसा है जहां पे बहोत सारा पानी एक साथ नीचे जा रहा है लेकिन बहोत गंदा पानी लग रहा है ये।

और ये खुला मैदान दिख रहा है जहां पे ये पेड़ पौधे लगे हुए है और घास वास ये ग्रीनरी है।

मोदी पेंट्स एंड हार्डवेयर वहां पे ये पेंट वेंट बेचते और हार्डवेयर --

ये भी एक शॉप है जिसको हिंदी में ऊपर से कुछ लिखा हुआ है।

मकान जैसा है इसके दरवाजे खिड़कियां ग्रीन कलर की है।

उसे पे भी कुछ पोस्टर बने हुए हैं जिस पे पेंसिल बना हुआ है उसे पे दो बच्चे --